यह एक गेट लाइट है जो शादियों में अ अधिकतर अ लगाया जाता है यह --

यह एक गैरेज है जो अम यहाँ पे बहुत सारे गारीयों का भी ये --.